ये एक पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप का नाम इंडियन आवेल है और उसके आगे एक व्यक्ति मोटर साइकिल ले करके है जो सादा सादा रंग का टी-शर्ट पहना है सफेद रंग का टी शर्ट पहना है ओ --

तो एक स्कूल है जिस स्कूल मे लिखा हुआ है होली विज़न पब्लिक स्कूल और उसके आगे एक मोटर साइकिल ढका हुआ है और उसके आगे दो घट्टी है ।।

ये तो एक दुकान का फोटो हैदुकान मे बोहत सारे लेस दिख रहे हैउसकी आगे दो व्यक्ति दिख रहे है और उसकी बगल मे बोहत सारे घर दिख रहे है गेट दिख रहे है।